इस इमेज में मंदिर के बाहर की दीवार नजर आ रही है जिसके बीचों-बीच में एक देवी है व्हाइट कलर की एक वायर टंगा हुआ है।

ग्रीन कलर का झाड़ दिख रहा है बाजु में दो वाइट कलर की पिलर दिख रहे हैं पिलर पे एक रस्सी बंधी हुई है ब्लैक कलर की टी-शर्ट लटकी हुई --